म-मुड़ी में बांधले बाड़े और निचे --

कोनो पेड़ छोटा-बड़ा बारे और --

टेबुल पर रखल बारे और एगो आदमी --

पंडित जी पूजा करत बाड़े और दीप बरइत बाड़े और --

और उ गुलाबी कलर के जैकेट पहीनले बाड़े और जीन्स पहीनले बाड़े एगो आदमी --

औइ पर लिखल बारे तिनसों पाछतर तिनसों पचपन तिनसों निन्यानबे दूसौ निन्यानबे --

फाटल जीन्स पहनले बाड़े और करिया टी-शर्ट पहनले बाड़े और एगो आदमी --